कुछ सफेद बोरियां भी दिखाई दे रही हैं।

एक लाल रंग का मशीन भी दिखाई दे रहा है।

जिसके उस पार बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

साथ हि छोटा सा गार्डन भी बना हुआ है।

यहां पर हम सामने एक कमरे को देख रहे हैं।

सामने एक भूरे रंग की अलमारी है।

इसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दिखाई दे रहा है।

अंदर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही है साथ ही कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

लाल रंग का पजामा पहना हुआ है।

जिसमें रैक में बहोत से समान नजर आ रहे हैं।

जिसका रंग हरा और सफेद है।

सामने एक बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है।

मॉल की दीवार कांच से बनी नजर आ रही है।

किया गया है साथ ही सामने भगवान की प्रतिमाएं भी दिखाई दे रही हैं।